कुछ घर बने हुए है जो सफेद कलर के है और वहां बहोत सारे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है।

चैड भी लगा हुआ है जिसमें दो तीन फीलिप--

यहां पर एक ब्लैक कलर की लोहे की कढ़ाई दिखाई दे रही है।

यहां पर एक साथ दिखाई दे रही है।

नीले कलर में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें वस्त्र लोक लिखा हुआ है।

पर एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

के बगल में अगल बगल दोनों साइड कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

इसमें बू कलर का पडदा लगा हुआ है।

यहां एक कमरे में टेबल रखी हुई है और उसके सामने दो तीन--

में पीला कलर होता है और ऊपर--

और ऊपर नीला बादल भी दिखाई दे रहा है।

और कुछ सफेद और येलो कलर के कपड़े पहने हुए हैं और पीछे साइड --